दो लम्बे पौधे उगाये हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ आसमान नजर आ रहा है।

कुछ अ नीले रंग की खिड़कियां दखाई दे रही है। यहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर आसमान का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है।